किनारे पर नाव लगी हुई। टोपी पर लिखा बॉय रेड कलर की टोपी। पीछे से हरा भरा जंगल।

फुआरे के किनारे एक बड़ा सा बाउंड्री और फुआरे के अंदर लाइट जिससे फुआरे की चमक दिखाई दे रही।

ब्लू कलर की टेबल के ऊपर प्रेस करता हुआ कपड़ा --

एक टेंपो ट्रैवलर बस मिनी बस जिसमें खिड़कियों में परदे लगे हुए ऑरेंज और व्हाइट डेकोरशन खिड़कियां बंद --

दो आदमी बैठे हुए एक फोन पर बात करता हुआ एक बड़ा-सा घर जिसमें एक गेट जिसमें जिसका दरवाजा बंद एक बड़ा गेट एक छोटा भी गेट दोनों दरवाजों पर ताला।

मेज पर लेटा हुआ एक स्केल्टेन ।